यहां एक रोड है वहां रिक्शा खड़ी है।

यह कोई पहाड़ी जंगल है और पहाड़--

और हरे हरे पानी है।

और यहां पे एक आदमी एक औरत बैठे हैं।